यहाँ पर एक एक रोड गया है जो कि एक इन्सान यहाँ पर खड़ा है जो कि जिसने आ रेड कलर कि शर्ट पहनी है और एक --

यहां पर एक एरोप्लेन है बहुत बड़ा जो कि व्हाइट और ब्लू कलर का है और यहां पर बहुत से लोग भी खड़े हुए है जो जो काम करने वाले होते है इनकी स्पेशल ड्रेस होती है वो लोग भी खड़े हुए है यहां पर।